बाहर दो तीन लोग भी खड़े हैं तथा यहां लिखा हुआ है स्कूल की जानकारी और के बारे में।

गुब्बारे बहोत ज्यादा खूबसूरत लग रहे है और जो काउंटर है वो भी बहोत अच्छा है अंदर बहोत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बुक मिलती है।

यह फोटो एक कॉलेज की है जो छत्तीसगढ़ में है यह कॉलेज बहोत बड़ा लग रहा है।

नीचे ग्रीन कलर की दरी बिछाई गई है पास ही में दो तीन पर्दे लगाए गए हैं जिससे आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए।

यह फोटो मां करणी भोजनालय के है।

है तथा अन्य कई चीजे भी है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है यहां जो सामने बिल आया कुछ लिख रहा है वह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है।

यह फोटो किसी बस स्टेशन के बाहर की है।

जहां बैठने के लिए सीट लगाई गई है तथा ऊपर छांव के लिए टैंड में लगाए गए हैं।

यह फोटो आइसक्रीम पार्लर की फोटो है।